और लेफ्ट वाले पे ड्रैगन की फोटोज है।

सामने रोड है उसके जस्ट सामने पे एक चर्च है।

बहोत सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए है गार्नियर के--

छे लोग पांच लोग छत के ऊपर है बस के--

छत्तीसगढ़ बुक डिपो दिखाई दे रहा हैं।

और एपल्स हैं और एक --

के अगल बगल ईंटस रखे हुएं हैं।

एक अंकल हैं जो रिसीप्ट में कुछ लिख रहे है पैन से।

ऊपर में बहुत सारे रौडस लगे हुए हैं।

कुर्तीस दिखाई दे रही है।

क्लिपर दिखाई दे रहै हैं।